यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट से लिया गया है जिसके दीवालो पर ब्लू कलर का यूज किया गया है।

तस्वीर में एक बिल्डिंग है जोकि पिंक कलर से रंगा हुआ है उसके ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसपे हेल्थप्लस लिखा है।

बिल्डिंग के ऊपरे माले पे तीन खिड़कियां बनी हुई है जिसमे ग्लास विंडो लगा है।

इसके बगल में एक बड़ा सा कमरा जो की स्पेशटस का बना है वह है--

एक दो व्हीकल भी बरामदे पे लगा हुआ है।

तस्वीर में दो व्यक्ति दिख रहा है एक ने चेक शर्ट पहना है और दूसरे ने स्ट्राइप शर्ट पहना है।

इसमें दीवालो पर ब्लू और पर्पल कलर किया गया है।

फाउंटेन के बगल में फूल के बगीचे लगे हैं।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट का है।

एक व्यक्ति के गोद में एक छोटा बच्चा भी है।

ये सभी लाइन बना के खड़े हैं।

एक मेज़ पर पांन छः ट्रॉफ्रियाँ सजा कर रखी गई हैं।

बिल्डिंग के चार दिवारी से सटा एक ठेला लगा है।

उसके पीछे एक गुफा नुमा आकृति दिख रही है।

दूसरी साइड दो चेयर लगा हुआ है।

दिवाल पर साईं बाबा की तस्वीर भी है।

तथा पांच छे स्टील की अलमारियां रखी हुई है।